पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। सामने वाला टोटों --

पीछे मुह करके खड़ी हुई है और यहाँ पर एक पेड़ है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि यह कोई स्टोर या --

कुछ लोग यहाँ पर दिया जैसा कुछ बहोत ही उज्जवल लग रहा है दिया।

पूजा है। छठ का पूजा। यहाँ पर बहोत सारी औरतें सज-धजकर कर तैयार हो कर आयीं हैं और यहाँ पर गंगा का घाट ऐसा प्रतीत होता है। यहां पर बहोत सारे --

यहां पर बोहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं लग रहा है कि यहां पर सेल्फी खींचा रहे हैं।

बहोत बड़ा गेट लगा हुआ है अंदर जाने के लिए बहोत ही सुंदर नजरा है देखने में बहोत साफ सुथरा नजारा देख रहे। यहां पर खंभे और तार भी लगे हुए हैं। यहां पर --

उसके बगल में भी एक और आदमी दिखाई दे रहा है जो देख रहा है किसी को। अच्छा नजारा है यहां का।

जो एक बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और एक अंदर में एटीएम में कुछ पैसा निकाल रहा है। अच्छा दिख रहा है नजरा।

पुतला है जोकि कपड़े पहनाया हुआ है। बोहोत सारे लोग नजर रहे है। अंदर का अच्छा व्यू दिख रहा है।